ये एक गाड़ी है और ये गाड़ी से एक वीडियो बनाया हुआ है और ये एक पुल है और यहाँ पुल पर एक गाड़ी सामने से आ रही है और एक गाड़ी जा रही है जा रही है।

देखिये फूलों के किनारे किनारे पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं लगे हुए हैं और यहाँ पर नदी भी बहुत लंबी है और चौड़ी है।

यह एक एजेंसी है और यहाँ पर दो ब्लैक कलर की कारें खड़ी हुई है और यहाँ पर बीच में टेबल और चार कुर्सियाँ रखी हुई है।

ये एक दुकान है दुकान का नाम काजल रेडीमेड गारमेंट है| और यहाँ पे दुका दुकान के बहार दो कुर्सियां रखी हुई है और एक थर्मस रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है।

ये एक शेर है जो अभी पिंजरे के अंदर पैक है और उसके चारो तरफ जाली लगी हुई है की बाहर ना निकल पाए।